ये जम ये बुक स्टोर जामतारा मे ही सतिथ हैऔरे इन के पास कितबे जो है बहुत ही मतलब सभी प्रकार की कितबे यहा पे उपलब्ध है काम्पिटिशन लवेल का आपका अकेडमिक लवेल का और इस बुक स्टोर मे कितबे सही दम पे मिलती है।

ये मोल जामताड़ा में स्थित है और ये मोल में मतलब की बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और भी सामने है स्थित है फर्नीचर वागेर आपका जितने सारे कॉस्मेटिक वाले समान आपका स्टाइलिश वाले सामान सब कुछ यहां पे अविलेबले हैं।

राज श्री मेरिज हाल जामताड़ा का सबसे बढ़िया मेरिज हाल है यानी की सबसे बड़ा मेरिज हाल और यहां पे शादियों की सीजन में बहुत अच्छी फैसेलिटीज मिलती है लोगों को कम दाम में अच्छी सजावट मिलती हैं।